और इसमें छोटे लोग नहीं जा पाते हैं।

जो काफी ज्यादा अच्छा है।

सामने तरह-तरह की गाड़ियाँ और में है।

ये एक पोलेट्री फार्म है।

और यहाँ पर दवाइयाँ मिलते है।